यहाँ पे लाइटिंग का भी काम हुआ है।

और यहाँ पे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और इस पेड़ में जो पत्ते लगे हुए है भो बड़ा-बड़ा सा है।

और कुछ लोग वहाँ पे घुमने भी गये है और वहाँ पे सेल्फी ले रहे है और यहाँ पे--